इ ये एक ऑफिस है। ऑफिस में दो कुर्सिया पड़ी हुई हैं। शोकेस लगा हुआ है। लाईटे जल रही हैं।

सामने बोर्ड लगा हुवा है । ऊपर टाइले नीचे टाइले बिछी हुई हैं ऊपर लाईट लगी हुई हैंए_सी लगा हुवा है । ऊपर सूट भी टंगी हुई हैं चपल भी टंगी हुई हैं। नीचे--

नव वलकुवा भी है। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं निचे। सफ़ेद बादल भी है ऊपर हरी भरी घास भी खड़ी हुई है। पेड़ भी खड़ा हुआ है।